यह पर बहोत से--

यह एक जलप्रपात है यहां--

पौधे एवं पेड़ नजर आ रहे हैं।

यह फूलों का एक समूह है देखने में यह बहोत ही अच्छा है।

एक खाली मैदान है जिसमें एक बिल्डिंग बना हुआ है।

छोटा उद्योग है जिसमें--

यह किसी झरने में का पानी है।

जिसमें चार लोग फोटो खींचते दिख रहे हैं।

जहां बहोत से लोग योगा कर रहे हैं।

इस दृश्य में बहुत सी मूर्तियां हैं एवं--

इस दृश्य में बहोत सारे हल्दी के पेड़ लगे हुए हैं।